यहां मुझे एक प्लेस दिखाई दे रहा है और का और का और हां पे गेट नज़र आ रहे हैं गेट के अन्दर मुझे बहुत यहाँ एक कुछ बैठे हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति ने जो कि उसने पेड़ को पकड़ रखा है और यहां मुझे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एक प्रेस दिख रहा है यहां मुझे बोहोत से लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं और यहां मुझे पेड़-पौधे बहोत सारे दिख रहे हैं।

बड़ी सी स्विमिंग पूल दिखाई दे रही है स्विमिंग पूल में कुछ लोग स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तीन व्यक्ति और मुझे यहां पर एक बड़ा सा प्लेस दिखाई दे रहा है।